सिर्फ ग्राउंड नजर आ रहा है हरी भरी घासे नजर आ रही हैं।

ये एक सैलून के बाहर की फोटो है और जहां पे इसका ओपनिंग का सनैरिओ नजर आ रहा है।